और यह किसी पार्क का तस्वीर है।

एक फोन लेकर जा रहा है हाथ में--

यह तस्वीर बाजार का है।

और इसमें एक टेबल रखा गया है।

इसका गेट खुला हुआ है।

उसके बगल में दो चेयर हैं।

यह तस्वीर --

सभी लोग सावधान में खड़े हैं।

इस तस्वीर में दो गाड़ी दिख रहा है।

यह तस्वीर किसी दुकान का है।

एक बुक का दुकान दिख रहा है।

यह तस्वीर किसी रेस्टोरेंट का है।

इस तस्वीर में टेबल और चेयर दिख रहा है।

टेबल पे एक जग है।

जो लैपटॉप के सामने बैठी हुई है।

इस तस्वीर में एक पूल दिख रहा है।

उस पूल के बगल में एक और छोटा सा--

यह तस्वीर किसी फील्ड का है।

उसके पीछे दो लोग आ रहे हैं।

और एक बाइक वाला रास्ता से गुजर--

इस तस्वीर में सभी लोग बैठे हुए हैं।

किसी नदी या तालाब का है।

यह तस्वीर किसी रेस्टोरेंट का है।

यहाँ पे मेन्यू रखा गया है।

और ये सभी एक बर्तन में है।

और इसे हाथ से कोई पकड़े हुए हैं।

बीच में से पानी ऊपर जा रहा है।

और फिर ऊपर से नीचे आ जा रहा है।

रेस्टोरेंट का हो सकता है।

बहुत सारा बांस--

वगैरा-वगैरा बहुत सारे चीज दिख रहे हैं।

और काफी अच्छे से मैनेज किया गया है।

यह तस्वीर रात के समय लिया गया है।

तस्वीर किसी डांस क्लास का हो सकता है।

वाइट कलर से दड़ीर खींचा गया है।

उसके बगल में वाइट कलर का एक घर है।

यह तस्वीर किसी सैलून का है।

इसमें एक आदमी बैठा हुआ है।

तीसरा इंतजार कर रहा है।

और सीसा में पैक है।

इस जगह पर पंखा लगाया गया है।

और सभी बिल्डिंग्स वाइट कलर का है।

यह तस्वीर रात में लिया गया है।

गुजर रहा है रास्ते से।

एक ब्लैक काड़ है और दो वाइट कार ।

बहुत सारा लाइट लगाया गया है।

और ये तस्वीर रात में लिया गया है।

पेड़ के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं।

इसमें बहुत सारा कपड़ा रखा गया है।

इस तस्वीर में एक आदमी मछली बेच रहा है।

यह तस्वीर किसी पार्क का है।

इसमें एक कार लगाया गया है।